जेम्मे भी बहोत ज्यादा पेड़ जंगल और प्लांटस लोग भी है।

और सामान लोग भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।

खाने का सामान दिखाई दे रहा है उपर मे वॉल का कलर भी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है नीचे का फ़्लोर व्हाइट कलर का है।

उनके अंदर मुझे पंखा पोस्टर पिक्चर्स भी नजर आ रहे हैं।

चार लोग दिखाई दे रहा है दो बाइक भी दिखाई दे रहा है बाइक का कलर ब्लू और ब्लैक है।

यहां में एक रूम है जो वाइट कलर का है।

फ्लोर भी है फ्लोर का कलर तो व्हाइट है।

मुझे एक बहुत बड़ा सा और लंबा सा बिल्डिंग नजर आया है।

ए प्लेग्राउंड में बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग बच्चा लोग जो खेल रहे हैं।

का और संचित भी दिखाई दे रहा है।

औरत भी दिखाई दे रहे हैं औरत जो स्वेटर पहनके हैं।

मट्टी लोग है और साइड में बहुत ज्या जंगल है पेड़ हैं।

यहां हमें मोटर बाइक भी नजर आ रही है।

ये एक इंजीनियरिंग क्लास है जहां बहोत ज्यादा स्टूडेंट लड़का लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे देख रहे--